यहां पर एक ब्लैक बोर्ड एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ हैं।

यह लीची एक प्लेट में रखी है चार पांच गुस--

यहां हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

जहां पर पीछे मंगलसूतर --

काली पेंट सफेद शर्ट पहनी हुई हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि पहाड़--

यहां पर हमें एक घर दिख रहा है।

यहां की खिड़कियां पीले रंग की हैं और झोपड़ी में लाइटें जली हुई हैं।

यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुवे दिख रहे हैं जिन्होंने हुड पेहने हुवे हैं।

और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है।